वाओ तंदूरी की चाय स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट क्या दोस्त हैं यार मस्त बना हैं तुम्हारा--

चाय की दुकान है कि होटल है यार और कॉफी स्टॉल कॉफी स्टॉल है कॉफी सर कॉफी अच्छा दुकान हैं।

रेस्टोरेंट हैं क्या? कितना अच्छा दिख रहा हैं भाई घूमने जाते तो अच्छा रहता वो क्या हैं गुब्बारा -उब्बारा लगा हुआ हैं और ऊपर सजा हुआ हैं।

ये चर्च की लगता तो है चर्च ही है ऊपर क्या दिख रहा है? चर्च में गॉड ब्लेस यू लिखा है डिजाइन से बनाया बिल्डिंग अच्छा दिख रहा है सारा ऊपर मंदिर भी बना हुआ है।